इस पेट्रोल पंप को देख कर लगता है की यहां पर बारिश हुई है इस पेट्रोल पंप पर कुछ गाड़ियां नजर आ रही है और कुछ छोटे-बड़े पेड़-पौधे नजर आ रहे है।

इस फोटो में आप देख सकते हैं आपको एक बेहद खूबसूरत मंदिर नजर आ रहा हैं मंदिर में कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

मंदिर है वाइट कलर से पुता है और नीचे से ऑरेंज कलर से पुता हुआ है। यहाँ दर्शन के लिए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं।

मंदिर में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। मंदिर पुराना नजर आ रहा है जो नीचे से पीले रंग से पुता हुआ है। मंदिर के पास कुछ तार नजर आ रहे हैं।

इस मंदिर के सामने एक नाग का फन बना हुआ है और उस पर एक ओम लिखा हुआ है एक मंदिर में कुछ ऑरेंज कलर के झंडे लगे हुए हैं।

और उस गेट के बाहर एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है। कंपनी के बाहर सभी एक जैसी कारें खड़ी हुई हैं जिनका कलर वाइट है।